और साइकिल लगा हुआ है एक साइकिल खड़ा हुआ है। बड़ा-सा ब्लू में लिखा हुआ है बोर्ड में एस वाइट कलर से एस.बी.आई. बैंक ।